यह पिक्चर किसी रेलवे स्टेशन की है इसमें ट्रेन की पटरियां दिखाई दे रही है एक ट्रेन जाते हुए दिखाई दे रहा है कुछ --

गरे घास से गार्डन लिखा हुआ सामने दिखाई दे रहा है उसके किनारे सफेद --

बीच में एक रास्ता गया हुआ है किनारे हरी छोटी-छोटी पत्तियां व घास दिखाई दे रही हैं आसपास कुछ पेड़ भी हैं ।

यह पिक्चर किसी फॉल की लग रही है इसमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सामने कुछ लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

पथरी रंग की है दीवारे सफ़ेद रंग की है दो खिड़किया भी दिखाई दे रही है खिड़कियों में लोहे की छड़ लगे हुए है।

इस पिक्चर में एक छोटासा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे किनारे मिट्टी है।

खिड़किया बड़ी -बड़ी है सीसे लगे हुए है बाहर पेड़ -पौधे दिख रहे है।

पास आते जाते हुए दिखाई दे रहे है मस्जिद के ऊपर एक बड़ा मीनार भी बना है पास ही लोहे का एक खम्भा है एक पेड़ भी है।

सामने कुछ माइक भी रखा हुआ है कई सारी कुर्सियां भी हैं ।

यह लड़की नाचते हुए दिखाई दे रही है इसके पीछे एक बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है।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

इस पिक्चर में एक हवेली जैसा मकान दिखाई दे रहा है ये बहुत ही बड़ा है इसके आसपास कई सारी स्कूटी --

इस पिक्चर में एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है मकान में कई सारी शीशे की किड़कियां लगी हुई हैं ।

एक बड़ा काउंटर बना हुआ दिखाई दे रहा है दो ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

इस पिक्चर में बड़ा खुला जगह दिखाई दे रहा है इसमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यह पिक्चर किसी समारोह की लग रही है बड़े-बड़े पेड़ हैं ।

इस पिक्चर में एक बड़ा मकान जैसा दिखाई दे रहा है यह सफ़ेद गुलाबी काले रंग के है इसमे --

इसमें सजावट भी हुई है सफेद रंग की लाइटें जल रही है लोहे के छड़ों से गेट बना हुआ है ।

इस पिक्चर में सामने एक लंबा मकान दिखाई दे रहा है इसमें कुछ सीढ़ियां लोहे की छड़ भी दिखाई दे रही हैं ।

पर कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं दीवारें सफेद रंग की हैं नीले रंग के पर्दे भी लगे हैं ।

कई सारे रंग बिरगे कपड़े दिखाई दे रहे है सफ़ेद रंग की लाइटे लगी हुई है।

इस पिक्चर में एक गंगा जी दिखाई दे रहा है इसके किनारे किनारे बहुत ही घने छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे है।

जमीन पर मार्बल्स लगे हुए है दिवारे सफेद रंग की है खिड़की में शिशे लगे हुए है।

इस पिक्चर में एक खुली जगह दिखाई दे रही है इसमें --